लकड़ी की कुर्सियां बनी हुई हैं। ये बहोत अच्छी डिज़ाइन बनी हुई हैं।

डबल एंड सिंगल और यहां पे हरियाली भी है।

यहाँ पे बैठने के लिए रिलैक्स फील करने के लिए मतलब बहोत अच्छी जगह है जहाँ पे लोग--

धागा है सीज़र्स है मोतिया है चार्ट पेपर है।

यह एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर है जहां पर पुजारी जी पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं मंदिर बहुत अच्छा बहुत सुंदर नजर आ रहा है यहां की मूर्तियां बहुत अच्छी है।

पूजारी जी बहुत अच्छी तरह से पूजा कर रहे हैं।